फूलों के बगीचे के पास जाने से हमें सुन्‍दर सी महक मिलती है।

तो उन्‍हें एक मंजिला मकान बनाने के लिए भी कई प्रकार के परिश्रम करने पड़ते थे।

हर जगह पर बड़े-बड़े मंजिला मकान है।

बिरयानी एक ऐसा भोजन है --

इसके आर पार रोशनियां लगी हाेती है और बीच में पानी का स्‍त्रोत होता है।

जहाँ की उस राज्‍य की राजा-रानी वास करते थे।

महल में बड़ी-बड़ी कारीगरी मौजूद होती थी।

लोग भीड़ में तेज चलकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं।

हमारे देश में हर धर्म की बहुत ही इज्‍जत की जाती है।